बन्दर का चित्र दिख रहा हैबंदरे है और घना जंगल भी है पार्क जैसा लग रहा है ये जंगल है|

बहुत अच्छा है यहाँ पे कक्षा वा वन से टेन तक दी जाती है अच्छी कक्षा। उसके बाद इलेवंथ ट्वेल्थ की भी कक्षा दिया जाता है आर्ट्स साइंस वाला के लिए अच्छा पढ़ाई होता है।

अच्छा पार्क है पेड़ भी दिख रहा है कोई पार्क का ये सीन होगा अच्छा पार् का ए सीन होगा ये वाला अच्छा दिख रहा है।

घर के बहार बाइक भी लगा हुआ है हरा भरा सीन भी है जैसे यहाँ कोई सरकारी काम हो रहा है या कुछ भी काम धाम यहाँ किया जा रहा है या तो कोई --